यहां मुझे क्रीम बन भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां बेकरी दिखाई दे रहा है जहां पर कांच के अंदर में बहोत सारे खाने की मिठाइयां रखी गई है।

यहां पर मुझे ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां बहुत सारी गाड़ी जा रही है येलो कलर की ऑटो भी दिखाई दे रही है।

बहुत सारे आदमी बैठे हुए भी दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर में एक सफेद रंग की बड़ी सी कैमरा दिखाई दे रहा है जहां पर काले रंग की सोफा सेट लगाई हुई है।

पीछे मुझे बड़ी सी स्क्रीन दिखाई दे रही है।

ब्लू कलर की चेयर दिख रही है और येलो कलर टेबल दिखाई दे रही है।

मुझे यहां टी_वी का एंटीना भी दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे हाईवे दिखाई दे रहा है जिसमें एक स्कूटी खड़ा हुआ दिख रहा है।

यहां एक आदमी ग्रीन कलर की शर्ट पहनते हुए मछली खरीद रहा है।